यहां पर कुछ काम चल रहा है।

यहां पे दो चार बक्से रखे हुए हैं एक बड़ा बक्सा है।

वहां साइड में एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ है रेड कलर का है।

यहां पे एक आंटी खड़ी है जिन्होंने व्हाइट कलर का साड़ी पहना हुआ है रेड कलर का ब्लाउज पहना हुआ है।

यहां पे एक कार भी खड़ा है सिल्वर कलर का।

ये फोटो एक अनकम्प्लीटेड मस्जिद का है।

ग्रीन कलर का एकजयमांज है रेड कलर का एक जयमांज है।

इस फोटो में हमें कुछ दवाइयां के बोतलें नजर आ रहे एक आदमी बैठा हुआ है।

अवर सर्विस ट्वेंटी फोर इन टू सेवन ।

व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

वहां पे एक झूला झूल रहे हैं एक खड़े हैं।

यहां पे छोटे गमले में छोटा सा पेड़ रखा हुआ है।

यह फोटो एक बस स्टैंड का है ।

हाथी के ऊपर येलो कलर का कोई कपड़ा रखा हुआ है।

यहां पे ढेर सारे पेड़ नजर आ रहे हैं बड़े बड़े।

यहां पे एक ऑटो क्रॉस कर रहा है ग्रीन ब्लैक येलो कलर का।

यहां पे बोर्डिंग स्नीज का बहुत सारा डिजाइन बनाकर के रखा हुआ है।